इसके नीचे पर एक आईना है आईना के बगल में एक कैनवस देखने मिल रहा है।

साइन बोर्ड का पोस्टर लाल कलर में देखने मिल--

तस्वीर पे मुझे साइकिल का दुकान नजर आ रहा है।

और एक बड़ा सा पर्पल कलर का गेट दिखाई मिल रहा है।

और लेफ्ट साइड का एक गेट का बगल में--

और पीछे पे फैंसिंग है लाल कलर का पे पानी जमा हुआ है और सारा प्लास्टिक फेक के रखा हुआ है।

इसमें झूला लगाया हुआ है दो येलो कलर का और एक रेड कलर का।

बस के बगल पे ढुकल लाइन भी खुला हुआ है।

आसमान में काला बादल देखने मिल रहा है।

बाइक का सामने एक आदमी खड़ा होके कुछ का कुछ देख रहा है।

और एक आदमी चेयर पे बैठके कुछ लिख रहा है।

और उसमें जितने भी आदमी आए हुए हैं अपने अपने कागज पकड़ के खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है।

जो में बहुत सारा अलग अलग मसाला आइटम को देखने मिल रहा है।

प्लेट के ऊपर में बहुत सारा लीची रखा गया है।

और ऊपर पे बीम लाइन के ऊपर पर तीन चन्ना देखने मिल रहा है।

और उसके बगल पे एक वाइट कलर का घर सुंदर सा सजाया हुआ वाला है।

बहुत सारा बाइक पार्किंग करके रखा गया है।

सुंदर सा आसमान देखना मिल रहा है फिर उसके राइट साइड पर इलेक्ट्रिक पोल्स खड़ा के रखा हुआ है और सबसे फ्रंट पे--

फैन के ऊपर सीधे ए_सी दिखाई दे रहा है।

राइट साइड पे बहोत सारा सामान रखा गया है।

पर्दा के ठीक नीचे पे बहुत सारा बेडशीट आइटम रखा हुआ है।

उसके बगल पे रॉय एकेडमी लिखा गया है।

बगल पे एक मारुति कार पार्किंग करके रखा गया है।

गाड़ी के आगे पे बहुत सारा लोहा रखा गया है।

इस तस्वीर पे मुझे शिव जी की पूजा करते हुए नजर आ रहा है।

घर के अंदर में बहुत सारा औरत लोग बैठा हुआ है।

उसके नीचे भी बहुत सारा खाली कार्टून देखने मिल रहा है।

इसका ग्राउंड फ्लोर टाइल्स का सर पर लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक काला रंग का गाय दिखाई दे रहा है।

उसका सीधे आगे में एलेन सोले का शोरूम है।

इसके लेफ्ट साइड में एक मारुति पार्किंग है।

लोगों को देखके आदमी खड़ा होके बैठा हुआ है।

बगल में दो लाइट जल के रखा हुआ है।

इनके पीछे बहोत सारा फ्लावर पॉट्स दिखाई दे रहा है।

हरो सेम ड्रेस पेन के रखा गया है।